इस पिक्चर में नज़र आ रहा है यहां पर--

इसके आगे गाड़ी खड़ी--

और यहां पर बहोत--

रहा है और यहां पर बहोत खाली रोड --